फर्श पे टाइल लगी हुई है जो की सफेद रंग की है।

इस फोटो में सामने लिखा हुआ है हीरो साइकिल --

कुछ यहां पर पंखे लगे हुए हैं एक ए_सी लगा है और कुछ पेंटिंग भी लगी हुई हैं।

दो तीन बाइक दिखाई दे रही हैं और आस पास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने काले रंग की शर्ट पहनी है और काले रंग की पैंट पहनी है।

इस फोटो में साइकिल की शोरूम दिखाई दे रही है काफी सारी साइकिल रखी हुई है आसपास--

सारी सब ने यह मास्क लगाया हुआ है और ब्लैक रंग की टी शर्ट पहनी है एक लड़की ने वो साइकिल पर बैठा हुआ है एक लड़का।

गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं जो की लाल और सफेद और नीले रंग के हैं।

एक रेड रंग का कारपेट बिछा हुआ है।

इस फोटो में एक स्टेज पर कुछ लड़कियां और कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं।

एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

और यहां पर दिन का समय है।

एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है।

और अंदर एक कार खड़ी हुई है।

सामने बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है गवर्नमेंट पी_जी कॉलेज फॉर रोहतक--

सामने बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है बालाजी फ्रूट कॉर्नर --

सामने लिखा हुआ है ए वन साइकल ।